एक छाता भी नजर आ रहा है।

यहां मुझे एक शोरूम दिख रहा है।

किले के पास बहुत से पेड़ दिख रहे हैं।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

एक फैन भी नजर आ रहा है।

एक येलो कलर का खंभा है।

मशीन के पास एक टॉयल लगा है।

यहां मुझे कुछ गमले भी नजर आ रहे है।

कार के पास कुछ बाइक्स नजर आ रही हैं।